लड़कों का फोटो लगा हुआ है बाइक खड़ा हुआ है।

एक टापू टाईप का दिख रहे है पानी दिख रहा है।

एक लड़का हरा कलर का टी-शर्ट पहना हुवा हैं।

गाड़ी खड़ा है गाड़ी के आगे स्कूटी खड़ा है।

और एक भवन है महाप्रबंधक --